यहाँ पर तार निकलता हुआ नजर आ रहा है। आसमान नीले रंग का दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक व्यक्ति उसकी फोटो खींचते हुए नजर आ रहा है तथा --

यहां पर सफेद रंग की लाइट औरऑरेंज कलर के गुब्बारे लगे हुए नजर आ रहे हैं|

एक गुलदस्ते भी रखा हुआ है। यहां पे कांच के शीशे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पे जंगल के पीछे बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं जिनपे बड़े ऊंचे-ऊंचे पेंड़ भी लगे हुए हैं। यहाँ पे एक लोहे की --

यहां पे हरे रंग की मैट बिछाई गई है।

यह एक मुख्य द्वार बना हुआ है। मुख्य द्वार जो कि लोहे का बना हुआ है।

सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहां पे काले रंग की एक कुर्सी रखी हुई नजर आ रही है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

नदी के आस-पास कुछ भी दिखाई दे रहे हैं। यहां पे एक बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और एक टीवी भी बहुत बड़ी नजर आ रही है।

लक्ष्मी होटल के इधर साइड में आर्यावर्त बैंक है और दूसरी ओर यूनियन बैंक नजर आ रही है।